यह चित्तूर का सिनु काम्प्लेक्स है यहाँ पर बोहत सारी तरह-तरह की दुकाने है|

जहाँ पर बोहत तरह के फ्रूट्स डिस्प्ले किये गए है|

यह चित्तोर में अनंदा लाइफस्टाइल की दुकान है यहाँ पर खाने पीने की बोहत सारी वस्तुऐं मिलती है|

आगे जा कर वह तालाब से मिल जायेगा यहाँ पर लोग नहा कर मज़े लेते है|